ये शोरुम ऑटो व्हीकल के लिए है।

और यहाँ पर कई लोग एक्सरसाइज भी कर रहे हैं।

ये टेंट पहाड़ों की घाटियों मे आए हुए है।

तो बेंच पर बैठे-बैठे पड़

यहां पे कई सारे लाइटिंग भी हुई हैं।

यह कार व्हाइट कलर की है।

ये पिक्चर में एक मकान है।

और कई सारे पेड़ भी है।

ये दुकान एक बियर के अड्डे की है।

इस नए मे बच्चों को एक पार्सनल एरिया और चेयर दी गई है।

इस मंदिर के बाहर अहिंसा परमों धर्मों के साथ सुविचार भी लिखा गया है।

और यहाँ पे कई सारे प्रकार के गुलाब भी है।

पींजेर के एक कोने में बैठा हुआ है।

पो यहाँ पे एक बडा सा लाइटिंग का खंबा भी है।

इस तबेले के बाजू में एक नीम का पेड़ लगा हुआ है।

इस होटल के अंदर कई सारे प्रकार की लाइटिंग भी लगी हुई है।

यह गोदाम पूरे के पूरा स्टील का बना हुआ है।

यहाँ पे कई सारे चेयर भी दिख रही है।